और गाड़ी के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने काले रंग के कपड़े--

जो कि स्टेच्यू लगे हुए हैं स्टेच्यू के ऊपर सर्दियों के कोटी और कुर्ते लगे हुए नज़र आ रहे हैं और नीचे बाहर ही में काफी सारा सामान पड़ा हुआ नज़र आ रहा है।

जिसके ऊपर सड़क बनी हुई है और दूसरी तरफ--

जो की काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

ये अपनी फोटो करता है उसके पास एक--

सामने एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जो कि काफी बड़ा है और इस हॉस्पिटल के बाहर एक--

और सामने ए पीछे उसके पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

सामने एक घर दिखाई दे रहा है जो की काफी बड़ा है घर के बाहर खुला मैदान भी है।

उसे ठीक करता हुआ नजर आ रहा है बोर्नेट के अंदर--